और एक बहोत पुराना बड़ा सा खेती बाड़ी का सामान--

इस क्लब मे पार्टी चल रही है।

मेरे अनुसार यहां रिलायंस मिड सिटी का एक बड़ा सा ब्रिज बनाया गया है।

इस दुकान में सभी शॉपिंग के लिए आते हैं और पैसे देकर जाते हैं।